और इधर कोई इंसान दिख नहीं रहा है| इधर बहुत तरह के अ-लोहे है इधर |

साइड में एक लड़की के हाथ में एक आ अ मोमबत्ती है और एक के हाथ में एक बैनर है।

बोहोत बड़ा-बड़ा पत्थर भी हैं छोटा-छोटा पत्थर भी हैं और साइड में बोहोत बड़ा-बड़ा पेड़ और छोटा -छोटा पेड़ भी हैं और इधर दो लोग खड़ा है। एक लोग बड़े पत्थर के ऊपर एक नीचे --

और जिस जिधर बैठा है एक बड़ा घर है और घर के साइड में कुछ पंखा और कुछ माइक लगा लगा हुआ है।

और इधर एक टेबल में कुछ खाता और भी सामान है।

ये एक किताब का दुकान है जो इधर बहुत सारा के किताब मिलेगा इधर किताब जिस जगह खड़ा रख रख रखा है --